यहाँ पर सिर्फ प्लांट्ससा हैं और ऊपर में कुछ झूला जैसा लगा हुआ हैं निचे कारे लगी हुई हैं इसके बिच मैं छेद छत बनाया हुआ हैं ऊपर दीवार मैं और कुछ खिड़किया भी बनाई हुई हैं।

और ऊपर मैं कुछ होल सा हैं उसके ऊपर बादल जो की बहुत ही सुन्दर दिख रहे हैं निचे मे फूल हैं पिले कलर के और पौधे हैं कुछ बहुत सुन्दर हैं।

ऊपर में बोर्ड लगे हुए हैं सामने में स्कूल हैं वहा के रोड साफ़ हैं और बच्चे हैं अंदर पढ़ रहे हैं।

और नदी हैं सामने पूल दिख रहे हैं ऊपर आसमान हेे सामने में सफ़ेद कलर का एक घर भी दिख रहा हैं जिसके सामने ऑरेंज कलर का कुछ और दिखाई दे रहा हैं।

यह जगह बहुत ही खूबसूरत हैं पेड़ लगे हुए हैं।

रेत ही रेत हैं ऊपर मैं आसमान हैं और सामने मैं कुछ भी नहीं हैं सिर्फ पानी हैं जोकि बहुत दूर मे फैला हुआ हैं।

सामने बिजली का खम्बा हैं मंदिर दिख रहे सामने बहुत ही खूबसूरत जगह हैं।